यहाँ पर एक क्लासरूम है और यहाँ पे बच्चे बैठ कर पढ़ रहे है और टीचर बैठा हुआ है।

गुब्बाले नीले सफेद कलर के है ।

स्टेज पे दो लोग बैठे हुए हैं और रात है और आसमान का रंग काला है और नीचे कार्पट बिछी हुई है।

और एक बाइक खड़ी हुई है काले नीले कलर की और सामने पोस्टर लगे हुए है बाइकों के |

और वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और आसमान का रंग नीला है और बादल का सफेद और ऊपर तारे गई हुई है ट्रेन की और बगल में पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक नदी है और यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है। पत्थरो के ऊपर --